बने हुए हैं खेलने कूदने के लिए और पेड़ दिखाई दे रहे हैं छायादार।

पेंट हुआ है दुकान के अंदर और टीन का एक कनस्तर से ढकी हुई है चाय की--

यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है एक सामने छत है छत्री नुमा छत छत दिखाई दे रही है उसके अंदर --

नित्य करते हुए इनके हाथों में एक यह व्हाइट कलर का कुछ है जो --

यहां पे हमें सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है यहां पर गोभी रखी --

यहाँ पर हमे दिखाई दे रहा है की सड़क है टूटी फूटी सी सड़क है और उसकी बग़ल में एक बड़ा सा पेड़ दिखायी दिख रहा है और उसकी पासी में एक --

यहां पे हमें दिखाई दे रहा है शिमला चिली फ्लेक्स करके एक --

बना हुआ है जो यहां पे बोर्ड भी है उसमें काफी सारे पेपर रखे हुए हैं लगे हुए हैं।